उसके साइड साइड में जो भी मोबाइल में एक एम बना हुआ है एक जो है लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है।

नीचे जो है अ टाइल्स के फ्लोर टाइल्स लगे हुए हैं और एक्समस ट्री जैसे पेड़ दिख रहे हैं।

और एक पिंक कलर की जोे है घर दिख रहा है दो तीन जो है टावर दिख रहे हैं छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं एक ईट का घर दिख रहा है यह नीचे जो है घांस-पुस दिख रहा है यहां पे जो है दो तीन कुत्ते दिख रहे हैं।